जिसके बीच में एक गणेश जी की प्रतिमा भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर मुझे एक एक्वेरियम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पानी और--

और उसके अंदर मुझे मछली भी दिखाई दे रही है।

और वो आदमी गाड़ी पे बैठा है उसके सामने एक औरत बच्चा हाथ में लिए खड़ी है।

जिधर से एक चढ़ाव भी जा रही है उसके आजू बाजू हरियाली भी दिखाई दे रही हैं।

उस दिवाल पे लाइट भी लगी हुई दिख रही है और कुर्सी भी दिख रही है।

उसके साइड में झूले पे बच्चा झूल रहा है।

सामने एक और आदमी कुछ स्टील के उसमें--

यहां पर एक व्यू दिखाई दे रहा है जो रात का है।